यहां पे कुछ आदमी और कुछ लेडिस योगा कर रही है और इनके नीचे लीले कलर का मैट बिछा हुआ है।

के भी रखे हुए है और उसके बराबर में कुछ कुर्सियां भी रखी है।

पर मोबाइल चला रहा है और उसके नीचे कुछ बाल भी पड़े हैं।

और आ सामे इसके पेड़ भी लग रहे हैं।

और एक पंखा भी रखा है और एक पंखा ऊपर लगा हुआ है उसके बराबर में लाइट भी लगी है।